एक हाथ पे एक आ रही है और उसने रेड कलर का पहना है और नीचे फर्श पर बहोत सारे--

और सारे फूल गिरे हुए हैंऔर पीछे एक फोटो आरहा है और एक पोस्टर लगा हुआ है चित्र बने हुए हैं।

है उसकी घर के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ हैऔर उसपे जड़ और पेड़ हैऔर ऊपर आसमान हम लोग को लगा हुआ दिख रहा हैऔर रेड कलर का छत पढ़ा हुआ है उस घर में और दो-चार चार-पांच पंक --

बॉयस खड़े हुए हैंऔर दो गर्ल्स खड़ी हुई हैंये शादी के फंक्शन में आए हैं इन्होंने मुझे एक फोटो खिचवा रहें हैं और पीछे --

बहोत टाइप लग रहा है जिसमे बहोत सारे बच्चों छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं।

जिसमें ऊपर वाले ऊपर-ऊपर वाले में भी बहुत सारे कपड़े हैं जिसमे नामक पेटी है --।

और एक दुकान है और पीछे एक फैन है और --

खड़ी हुई है और जी बाहर पर बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और बलूनस लगे हुए है और एक पिज़्ज़ा का चित्र बना हुआ है।

अंडरग्राउंड डिश लग रहा है जहा पर व्हाइट कलर कि कार खड़ी है और पीछे बहुत सारे घर है और पोल का है और जिनसे वायर जा रही है और पीछे --

टैपलर भी हैजिसमे बहुत सारा समान रखा हुआ है पीछे खाने का समान लगाने का समान शैम्पू --

बहुत सारा बहुत सारी अलग-अलग थोड़ा अलग-अलग प्रकार के समान रखे हुए है और ऊपर बहुत सुन्दर से लाइटिंग हुई है और ये ये पूरा ये ये ये पूरा दुकान बहुत सुन्दर --

तीन छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं और --